जो कि गोल्ड लेन-- गोल्ड लोन गोल्ड लोन है इंटरनेट है आंध्र बैंक ए_टी_एम एक्सिक्स बैंक यहाँ पे बहुत -सी गड़ियाँ लगा-- दिखाई दे रही है।